इसमें एक आदमी है अपने बच्चों को ऊपर चढ़ा रहा है और इसमें मेंढक के दो मुंह बने हुए हैं ये ब--

और एक औरत स्पीच दे रही है और वहां चर्च में है कई लोग बैठे हुए हैं और स्पीच सुन रहे है।

और इसके घर पर मंदिर के बाहर पुलिस दो पुलिस आपस मे से कुछ बात चीत कर रहे है और यहां पर एक फेन भी लगा हुआ है।

और यहां पर बहुत डेर सारी ईटे और बालू पड़ी हुई है और पीछे कई मकान बने हुए हैं और पेड़ भी लगे हुए हैं।

इसमें दिए जल रहे हैं और आरती के लिए थाली सजी हुई रखी हुई हैं और इसमें कई फोटो भी लगे हुए --

और बैंक में शीशे लगे हुए है जिसमे उसके सामने की दुकानों का दिख रहा है।

उनके पीछे शिक्षक खड़े हुए है और उनके साइड मे एक मैडम ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए खड़ी है ये एक डेकोरेशन ब्लैक कलर की है।

इसमें तीन लड़कियां लहंगा पहन कर चुनरी लिए हुए डांस कर रही है

उसके नीचे ब्लू कलर का शर्ट पहने आदमी कर के नीचे खड़ा होकर कर की सफाई कर रहा है और साइड में एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

ये एक मेले का सीन दिखाया जा रहा है जिसमें एक बोहोत बड़ा सा बिजली का झूला लगा हुआ है।

ये एक झरने का व्यू है जिसमे ऊपर से झरना बेह रहा है नीचे नदी है उसमे दो लोग नहा रहे है।

ये एक बहुत पुराना भवन लग रहा है जो गेरू और व्हाइट कलर पेंट क्या हुआ है